बाहर और कुछ मशीनें लगी हुईं साइड में व्हाइट दीवार पे--

एक गेट है खुला पड़ एक साइड में गोल गेट है सामने एक --

यह एक टाइल की शॉप है इसमें चेयर है।

एक साइड दूसरा पेंट है अलवर के लिए स्टेयर्स है स्टूल रखे हैं चेयर रखी है।

ये कोई इलेक्ट्रिक शॉप है इसमें बहुत ज्यादा कार्टून रखे हुए हैं और रैक बने हुए हैं कुर्सी है एक काउंटर है काउंटर पे भी समान है।

इस दुकान में कोई और आदमी कुछ कोई भी नहीं है बहुत ज्यादा काउंटर है और ये रैक में सामान है ।

यह एक पेट्रोल पंप है जिस पे तीन गाड़ियां लगी हुई है।

अंदर पूरा एक कॉम्प्लेक्स है ये बाहर दो तरीके के--

यहां शीशे का काम चल रहा है नीचे बहोत बड़ा हॉल टाइप में है बाहर एक बाइक खड़ी है।

यह कोई स्कूल या ऑफिस टाइप में बिल्डिंग है यहां पे बहुत ज्यादा कमरे हैं बीच में एक स्टैचू भी बना हुआ है बाहर सीमेंट के कट्टे भी है बाहर--

ये स्कूल क ये स्कूल का कार्यक्रम चल रहा है।

साइड में दो हाथी के स्टैचू खड़े हैं।

ये एक आयुर्वेदिक दुकान है जिसका नाम है--

एक ए_टी_एम लिखा हुआ है साइड में रेड कलर का पूरा प्रिंट हुआ है अहूजा ट्रेडिंग कंपनी लिखा हुआ है।

ये यही रेस्टोरेंट में लग रहा है ये चाय कॉफी --

और पीछे पेंट वगैरह है।

नीले कलर का बोर्ड रखा है। ये दो मंजिल का घर है।

जिन पर सुविचार वचन लिख रहे हैं।

बहोत ज्यादा पोल लगे हुए है ऊपर बहुत ज्यादा लाइन बनी हुई है।

कोई इनकी फोटो खींच रहा है साइड में और भी बंदे खड़े अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है।

जल रहे हैं नीचे कॉफी कलर की टाइलें हैं।

उसमें दो पिलर है साइड में से बहुत ज्यादा चांदना अंदर की साइड रेड कारपेट है।

साइडों में बहोत ज्यादा पेड़ हैं नीचे सीमेंटेड रोड है।

दो तीन साइकिले है पीछे कट्टे स्कूटी है दो साइकिल साइड में है।

ये एक नया घर बन रहा है जहां भी काम चल रहा है इसमें दो खिड़कियां है जालीदा--

अष्टविनायक लॉटरी सेंटर के नाम से एक दुकान एयरटेल का बोर्ड लग रहा है।